एक महिला यहाँ अंदर की तरफ जा रही है। नीला आसमान दिखाई दे रहा है। बड़े हरे पेड़ यहां पर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप की फोटो है ये। यहाँ पे दो कर्मचारी हैं जोकि पेट्रोल पंप पे बैठे खड़े हैं यहाँ पे।

यहां पर बहोत सारे मोमबत्तियां लगी हुई हैं। यहां पे अगरबत्ती भी लगी हुई है। यहां पर नीचे गार्डन यहां पर डला हुआ है बना हुआ है।

बिल्डिंग जो रहती है उसकी फोटो है। यहाँ पे बहोत सुंदर सजाया गया है। रंग बिरंगी यहाँ लाइटिंग लगी हुई है झंडा लगा हुआ है।

बहोत सारे हरे पेड़ यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर नीला आसमान मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ बहोत सारे लोग एन्जॉय कर रहे हैं।

और ये दिन के समय की फोटो है। नीला आसमान दिख रहा है और यहाँ पे पुल बना हुआ है।